यहां कुछ दर्शक घूमने के लिए आये है किले के बगल में एक गांव बसा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह फोटो किसी किले का है जिसे बेहतरीन ढंग से बनाया गया है किले पे जो दीवाल पे की गई नक्क्काशिंया है।

यहां एक किला हैकिले के चारों आसपास हरियाली है और नीचे गांव बसा हुआ है।

यह फोटो एक पार्क का है जहा सुन्दर सुन्दर शिलालेख बने हुए है इस पार्क में एक झूला दिखाई दे रहा है।

बस स्टॉप के बगल में ठेर सारे घर बने हुए है एक घर के सामने ट्रेक्टर खड़ा है।

इस फोटो में हम किसी विद्यालय का गेट देख पा रहे है।

एरिया में स्थित है इस विद्यालय के आस-पास बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है विद्यालय के बगल में बगीचा भी है।

यह फोटो एक झडे की है जिसे फहराया गया है झंडा खुला हुआ है झडे के चारो तरफ हरियाली दिखाई दे रही है।